मुझे दो बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे है तथा एक आदमी और एक औरत भी--

इन लड़कों के ठीक पीछे एक बड़े से स्टेज में माता रानी भोले बाबा वेह हनुमान जी की प्रतिमा भी--

अपनी अलग अलग दुकान लगाकर सब्जी बेच र--

ग्राउंड में बहोत सारे ऑटो ई रिक्शा वगैरा भी खड़े हुए हैं तथा इस स्टेशन में सीढ़ियां भी--

छोटी सी फिसल पट्टी लगी हुई नजर आ रही है।

मुझे इस फोटो पर एक रोड के किनारे बैंक नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक रोड --

यह ईंट सीमेंट के ईंट हैं तथा इन दीवाल के आजू बाजू बड़े बड़े पेड़ पौधे भी नज़र आ रहे हैं।

तथा इस शॉप पर तरह तरह के फर्नीचर भी नजर आ रहे हैं।

तथा डाइनिंग टेबल वह ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद है।

यह चर्च बहोत सारे झालरों व लाइटों से--

इस चर्च में बहुत सारी टेबलें भी लगी हुई हैं।

मुझे इस फोटो पर एक बहोत ही सुंदर वह बड़ा सा चर्च नजर आ रहा है।

साथ ही कुछ गाड़ियां वह एक ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।